सामने एक कुत्ता और एक बाइक पे बैठा व्यक्ति नजर आ रहा है।

बच्चे के कपड़े बहोत फैंसी लग रहे हैं।

बहुत सारे व्यक्ति खड़े और बैठे हुए हैं देखने में लग रहे हैं कुछ लोग खा रहे हैं।

बाइक पे बैठा हुआ नजर आ रहा--

सामने में कुछ आदमी नजर आ रहा है।

ये छबि दीन मे लिया गया है।

यहां बहुत सारे काम का सामान गिरा हुआ है और ये छवि दिन में लिया गया है।

पीला रंग का बहुत बड़ा टीन का गेट भी नजर आ रहा है।